यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में एक मुरती दिखाई दे रही है।

यहाँ पे ग्राउंड में मिटटी दिखाई दे रही है घास दिखाई दे रही है आस-पास पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है पीछे एक रही है जो की सफेद रंग की है।

गाड़ी ग्राउंड में खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक स्टेज है स्टेज काफी डेकोरेट किया हुआ है स्टेज के आस-पास फूल लगे हुए है हरे रंग के फूल लाल रंग के फूल दिखाई दे कुर्सी पर दो लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बस दिखाई दे रही है बस का कलर सफेद है बस के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जो की सफेद रंग का है जिस पर लाल रंग से पेट्रोल डीजल लिखा हुआ है।

कट्टीया रखी हुई है जिनका कलर हरा नीला पीला--

तीन आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है एक आदमी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है पीछे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है एक खम्बा लगा है लाइट लगी हुई है।

ग्राउंड में मिटटी दिखाई दे रही है पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई हैं।